यहाँ एक वाइट कलर की मल्टी दिख रही है मल्टी काफी--

यहाँ पे कुछ कचरा भी पड़ा हुआ है ऊपर टिन डला हुआ है।

जाली भी लगी हुई है यहाँ कुछ लड़के लोग लड़कियाँ लोग डांस कर रहै है।

यहाँ एक यहाँ एक नहर है नहर का पानी --

यहाँ एक कुछ मूर्तियाँ दिख रही है यहाँ पे सूरज के आकर के भी मूर्तिया दिख रही है।

ऑरेंज कलर का झंडा लेहरा रहा हैं।

यहाँ एक कछुआ दिख रहा हैकछुआ ब्लैक कलर का है।

यहाँ पे एक मंदिर है यहाँ एक पिंक कलर का है मंदिर के ऊपर--